एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे वो एक मंडप बनता हुआ है और यहां पे बहोत सारे फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन किया गया है।

कैट है वे बहोत ही यूनिक ब्रांडेड लग रहा है यहां पे छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे है बूढ़े भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे एक लेडिस है जिन्होंने साड़ी पहनी है।

आसमानी कलर का और ब्लैक कलर का यहां पे सामने बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है। यहां पे अ--

ये यहां पे एक बड़ासा पेड़ नजर आ रहा हैं यहां पे छोटे छोटे प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

किसी फाउंडेशन का फोटो है यहां पे बहोत सारे--